डी.एल. एस .पी .जी. कॉलेज बिलासपुर यह कोलेज शिक्षा मे बहुत ही अच्छा है और गार्डन भी बहुत अच्छा है।

और शायद बिल्डिंग मे कही काम हो रहा है और पेड पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं।